यह एक मोबाइल दुकान का तस्वीर है जहां पे ढेर सारे मोबाइल का तस्वीर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक सीसे का अलमारी है जिसको दीवाल में सेट किया गया है।

दीवाल में एक बड़ा सा पेंटिंग लगाया हुआ है सीलिंग सफेद है एक पंखा लगा हुआ है।

सामने गद्दे बिछाए गए हैं लेफ्ट में मैरून कलर का कुर्सी है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर बना हुआ है जिसके ऊपर गुंबज है जो काफी सुंदर लग रहा है।

यह एक डैम का तस्वीर है जिसमें ढ़ेर सारे द्वारा बनाए हुए हैं।

पीछे बास है। नीचे ढेर सारे हरे भरे घास है।

इस फोटो में तरह तरह और रंग बिरंगे के पोजदानी है।

जोकि डिफरेंट डिफरेंट कलर मे है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में है जिसको एक कतार वाइज रखा हुआ है।

जिसका कलर गोल्डन कलर है जिसपे ढेर सारी कलाकृतियों की गई हैं।

लड़का ब्लैक टी शर्ट ब्लैक ट्राउजर पहन के बैठा हुआ है और एक लड़का भूरा टी शर्ट ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ है।

और भी ढेर तरीके का जिम इंस्ट्रूमेंट रखा है सीलिंग में ढेर सारी लाइटें लगी हुई हैं।

बगल में एक पेड़ है कुछ बांस लगे हुए हैं।

सिलिंग मे ढेर सारे बलुन लगाए हुए हैं जिसका कलर हरा सफेद ब्लू है।

नीचे शीशे का काउंटर बना हुआ है उसमें गैलेक्सी सैमसंग का पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक चूड़ी दुकान का तस्वीर है जहां पर ढेर सारे रंग बिरंगे चूड़ी रखें हुये है।

लाइट लगी हुई है बाइक खड़े है ठेला लगा हुआ है।

लाइन से सामने बोरा पे बोरा लदा हुआ है दो दो स्टेपलर धरा हुआ है।

यह एक बड़े से बरामदे का तस्वीर है जहां पर ढेर सारे लाइट्स लगी हुई है और पीला कलर का झूमर लगा हुआ है।

घर के ऊपर से तार पार हुआ है पीछे ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं ।

इसपे एक हैएक आदमी सर पकड़ कर बैठा हुआ है।

नीचे ढेर सारा पोस्टर है। दो पंखा लगा हुआ है। एक मॉनिटर रखा हुआ है।

इस तस्वीर में ढेर सारे टेबुल और कुर्सी नजर आ रहे हैं जिसमें कभर लगाया गया है।